यहाँ रोड पर एक कार खड़ी हुई है जिसमे सोल्जर बंदूक लिए खड़े हुए हैं।

सीढ़िया दिख रही है निचे गार्डन में घासे दिख रही है रेड कारपेट --

यहाँ बड़ा सा रेस्ट्रोन्ट दिख रहा है जिसमे नीली पिली लाइट --

यहाँ छोटा सा रूम दिख रहा है जिसमे एक बेड लगा हुआ है एक डॉक् --

एक पिलो दिख रहा है निचे मशीने रखी हुई है दो --

चाय करटे भी दिख रही है बिजली के वायर पर्दे डले हुए है।

एक बड़ा सा बुक पॉइंट दिख रहा है जिसमे अंदर बूके और ऊपर श्री राजेस्वरी का बड़ा बोर्ड लगा दिख रहा है।

बड़ा- सा कारपेट बिछा हुआ है कुछ लोग हाथ जोड़ के बैठे हुए है एक इंसान एक लड़की के पीछे तक --

ईंटों की दीवार दिख रही है बड़े-बड़े पेड़ और घासे भी दिख --

रही है दूर पर छोटा सा मकान और लाइटें लगी थी।

लगा हुआ है बिजली के तार और मकान दिख रहा है ।

खासो की जमीन दिख रही है बड़े - बड़े पेड़ और आसमान भी दिख रहा है।

घासो की जमीन दिख रही है दूर पर कुछ लोग भी खड़े हुए है बड़ी सी वाइट बिल्डिंग भी दिख रही है आसमान दिख रहा--

यहां बड़ा सा ऑफिस दिख रहा है जिसमें ऊपर पंखे लगे हुए हैं रोशनदान भी बने हुए हैं।

पीछे बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं आस --

घासे भी दिख रही है बड़े बिजली के खंबे बिजली के तार दिख रहे है।

कुछ लोग भी दिख रहे है ऊपर शेड भी डले हुए है पेपर भी दिख रहा है।

पर हेलमेट भी डला दिख रहा है एक अंकल के हाथ में झोला दिख रहा है।

अंदर कुछ सामान भी रखा हुआ है क्योंकि --

बड़ा सा बिजली का खम्बा भी दिख रहा है।

बत्तखे बैठी हुई है किनारे पर कुछ लड़किया खड़ी हुई है कुछ--

का दिख रहा है कुछ मजदूर भी दिख रहे हैं बड़े-बड़े सरिए और --

बोर्ड दिख रहा है मॉल दिख रहा है अंदर कुछ शॉपे --

बीच में पीछे घर भी दिख रहे हैं कुछ --

पेड़ भी लगे हुए हैं आसमान दिख रहा है वाइट ईंटों की दीवार दिख रही है।

एक बाल्टी रखी हुई दिख रही है एक कार्टून भी रख --

दूर-दूर पर लोग भी दिख रहै है घासो की जमींन पर कुछ बच्चे बैठे हुए है पेड़ लगे है।

रहे हैं एक आदमी ऊपर पिलर पर पाइप पकड़ा खड़ा हुआ है।

यहाँ बड़ी-सी बिल्डिंग बनी दिख रही है जिसका रेड कलर का शटर का बोर्ड दिख रहा है बाहर बड़ा बिजली का खंभा --

यहाँ बड़ा सा पार्क दिख रहा है जिसमे बिच में बहुत सरे गमलो में फ्लावर लगे हुए है--

के ऊपर बोर्ड दिख रहै है विवों का बड़ा बोर्ड एयरटेल बोर्ड आईटी का --